यहाँ पर एक दुकान है एक टेबल है।

चॉकलेट्स मिक्सचर के डिब्बे है स्कैनर है।

यहाँ एक कमरा है उसमें दो लोग है जो कर रहे हैं।

आसमान है बड़ी पेड़ है दो कार है।

करेंट के वायर है।

बड़ा सा पाहड़ है। उस पर करंट का खम्बा है।

दो खिड़कियाँ हैं दो दरवाजे हैं सामने जाली है।

बड़ी हरी पेड़ है। एक कैमरा है। चुटी मंदिर है।

एक स्मोक डिटेक्टर है |

यहाँ एक दुकान है उसके सामने और छत के ऊपर टिन का शेड है।

यहाँ मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे करंट के खम्भे हैं बहुत सारे है।

दो-छोटे पौधे हैं |

बड़ा तराजू है अँधेरा है बाहर थोड़ी सी रोशनी है।

पौधे हैं बड़े पेड़ हैं ।